रूम है रूम का पर्दा पिंक है फर्स रेड है दो टेबल टेनिस है कलर ब्लैक ब्लू है।

नदी है नदी का कलर ग्रीन है नदी में नाव है नाव का कलर --

एक आदमी है ऑरेंज कलर का हाफ पैंट पहना हुआ है।

दुकान है दुकान का कलर ब्लू है काउंटर का कलर ब्राउन है।

रूम है रूम का कलर वाइट है फर्श पे डिजाइन बनाया हुआ है।

कचरे का दुकान है बोर्ड व्हाइट है ऑरेंज है दुकान के अंदर--

वाइट फर्स है काउंटर का कलर वाइट है।

घर है घर का कलर येलो है बॉर्डर रेड है बहुत सारे गमले--

जो रूम है कलर ब्लैक है फर्स का कलर ब्लैक है रेड है।

बहुत सारे फल रखे हुए हैं केला है केला टंगा हुआ है।

क्लासरूम है क्लासरूम का कलर वाइट है दरवाजे का कलर वाइट है वाइट शीशा है।

बोर्ड है बोर्ड का कलर ब्लैक है एक लड़का है।

एक आदमी है ब्लैक कलर का हाफ जैकेट पेहना हुआ है।

एक दुकान है बहुत सारे फ्रॉक टंगे हुए हैं फ्रॉक का कलर --

रोड है एक टोटो है टोटो का कलर नीला है ब्लैक है ग्रीन है।